कमरे में बहुत सारे बाल बिखरे हुए हैं और स्टाल में बहुत सारे क्रीम और समान भरे हुए हैं इसमें--

इसमें एक लेटेस्ट सेंटर को दर्शाया गया है।

सारे औरतें और बच्चे प्राणायाम करने में मग्न है।

यह खेत हरे-भरे फूल और पौधों से भरा पड़ा है।